साइड में बच्चों के खेलने के लिए गाड़ी हैं।

यहाँ एक बारिश हों रही है इस जगह पे अ रोड्स दिख रहे है रोड ब्लॉक किया हुआ है पुलिस के रेलिंग से अ यहाँ पे काफी सारे ऑटोस खड़े हैं।

चिकन चिकन भी बेच रहे है चिकन शॉप के साथ के साथ मछली के साथ में --

मल्टीपरपज शॉप है जनरल स्टोर --

यहां पे अलग अलग प्रकार के--

इसमें साइड साइड में पेड़ लगे हुए हैं एक ही तरह के पेड़ है पौधे हैं।

यहां काफी सारे सेल्समैन बैठे हुए हैं एक लेडी कस्टमर भी बैठी हुई है।

एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ है।

और कुछ लड़के एक्सरसाइज करते हुए भी दिख रहे हैं।

जो अपना साड़ी सूट वगैरा का शॉपिंग कर रहे हैं।

ट्रेडमिल मशीनें लगी हुई है साइकिलिंग के लिए--

काफी सारे कस्टमर भी हैं और फूड सर्व करने वाले लोग भी हैं।

जिसमें सड़क है। पार्क पे चलने के लिए सड़क बनाई गयी।

बहुत सारे साइकिल वाले की मशीन दिख रहे हैं और अंदर से बाहर का नजारा जो है।

और यहां पे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर है।